यह एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसका नाम कार एसेसरीज रखा गया है जिसके ऊपर बोर्ड लगाया गया है जिसपे की आर्ट होम लिखा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर नारायण हॉस्पिटल लिखा गया है आगे में ट्वेंटी --

यह एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक दो कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं रूम में दो टी_वी भी दिख रहा है।

बिल्डिंग के आगे बहोत सारा शिशा लगाया गया है जिसके आगे में पेड़ भी दिखाई--

बगल में एक ए_टी_एम दिख रहा है जो की एस_बी_आई का है उसके ऊपर में एक एंटीना भी रखा गया है बगल में एक गेट भी है।

आगे में बहोत सारे लोग खड़े हैं और इस साइड एक टेबल भी रखा हुआ है।

जिसमें थम्स अप स्प्राइट कोकोकोला किनले माजा लस्सी भी है नीचे में एक बाल्टी भी --

आगे में एक दुकान भी दिखाई दे रहा है जिसके बगल में कुर्सी रखी हुई है और बगल में एक ड्रग दुकान--

पीछे साइड बहोत सारे हरे हरे पेड़ भी हैं और कुछ लोग तालाब के किनारे ही बैठे भी हुए हैं।